यह कोई बाजार है बाजार में बहुत सारे बड़े-बड़े बिल्डिंग बनाए गए हैं बहुत ऊंचाई का ये बिल्डिंग है ये बिल्डिंग देखने में बहुते अच्छे हैं।

यह एक जंगल है यह जंगल बहुत ही घना है ये जंगल में बहुत सारे छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं यह जंगल बहुत ही अच्छा दिखता है लोग पिकनिक करने इस जंगल में आते हैं।

यह कोई ऑपिस है। ऑपिस के बाहर दीवाल में टैक्स कैलकुलेशन सेंटर लिखा गया है । हम हम लोगों को लगता है कि यहां कोई सरकारी ऑपिस है जो टैक्स यहाँ जमा --

यह एक उच्च विद्यालय है यह हरिहर दास के नाम से जाने जाते हैं यह प्लस टू विद्यालय है यहां बहुत सारे लड़के पढ़ाई करने आते हैंऔर बहुत सारा लड़का --